और यहाँ पर बहुत सारी हरियाली है। बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

यँहा पर एक टेंट लगा हुआ है। टेंट में दुकान लगी हुई है। दुकान में बहुत सारी राखियाँ रखी अ रखी हुई हैं।

शायद ये राखियों की दुकान हैं। एक लड़का भी खड़ा हुआ है जो ऑरेंज कलर की शर्ट पहने हुए है।

यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। और कुछ गमले भी रखे हुए है उन गमलो में पेड़ लगे हुए हैं।

डिस्टिक ऑफिस लिखा हुआ है और बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहै हैं बहुत सारे झंडे भी लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि झंडा वंदन कि तैयारी हो रही है।

यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा हैं।

और फिसल पट्टियां भी बनी हुई हैं बहुत सुंदर नजारा लग रहा है।

अंदर एक साइकिल रखी हुई है। एक स्टूल भी रखा हुआ है। एक दुकान की शटर खुली हुई है। जिसमे ताला फंसा हुआ है और उसके अन्दर बहुत सारे कार्टून भी दिखाई दे रहे हैं।

और गमलों में कुछ पेड़ लगे हुए हैं। एक डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर भी एक बिलडिंग दिखाई दे रही है और एक लोहे का गेट ल भी दिख रहा है। कुछ लोग भी ए दिखाई दे रहे हैं। एक दुकान कि शटर है। शटर गिरी हुई है। उपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

कंट्रक्शन का काम चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई छत डल रही है।

यहाँ पर कुछ लोग भी दिख रहे हैं और पेड़ लगे हुए हैंपेड़ बहोत सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

यहा पर एक रोड दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बनी हुई हैं और एक पेड़ भी लगा हुआ है जिसके तीन लटके पत्ते दिखाई दे रहे हैं।